यहां एक स्टैचू दिखाई दे रहा है।

यहां नदी दिखाई दे रहा है।

साइड में पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट का अंदर का दृश्य लग रहा है।

यहां से टैंक दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान जैसा लग रहा है।

आ मूर्तिये है दिखाई मिल रहे हैं।

टेबल में एक चश्मा पड़ा हुआ है यहां टेबल में मेनू पड़ा हुआ है।

ये शादी का घर जैसा दिख रहा है।

यहां एक टॉवल भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बार्बर शॉप जैसा दिख रहा है।

ये एक बारबार शॉप जैसा दिख रहा है।

ये एक स्कूल जैसा लग रहा है।

ये एक मेडिकल का अंदर का दृश्य है।

डॉक्टर कुत्ता का अ कुछ कर रहा है।

रेस्टोरेंट में माला लगाया गया है।